एक लड़का जिम में व्यायाम कर रहा है। जिसने नीले कलर कि शर्ट और काले कलर की पेंट पेहेन रखी है व सफ़ेद कलर के जूते पेहेन रखे हैं।

चित्र में एक दुकान दिखाई दे रही है। जिसमे लाल कलर के बोर्ड से सफ़ेद कलर में निजामी रेडियम सेन्टर लिखा हुआ है।

एक ने सफ़ेद कलर की शर्ट पहनी हुई है। एक ने हरे और सफ़ेद कलर की वाली शर्ट पहन रखी--

हरा कलर किया हुआ है व कांच की खिडकियाँ लगी हुई हैं। बाहर काले गेट लगा हुआ है। जिस पर काला कलर किया हुआ है।

चितर में एक सफ़ेद कलर की कार खड़ी दिखाई दे रही है। जिसमे कार का आगे का टायर बाहर निकला हुआ लग रहा है।

व एक जना मोबाइल से उनकी रिकोर्डिंग कर रहा है।

वो ऊपर छत पर स्पीकर भी लगे हुए है।

और उसके आगे पत्थर की कुर्सिया भी पड़ी हैं व काफी मात्रा में दिखाई दे रही हैं। जिसके पीछे काफी बिल्डिंगे हैं।

नीचे टेबल पे नीला कलर किआ हुआ है। नीले कलर कि लकड़ी की खुरशिया लगी हुई हैं व उसके ऊपर टयूबलाइटे लगी हुई हैं।

ये आगे डिवाइडर है जिसपे लाल व पीला कलर किया हुआ है। वह आगे साधन भी जा रहे है क--

चित्तर (चित्र) में एक खेत का चित्तर (चित्र) दिखाई दे रहा है।

चित्र में यह एक निर्मानादीन भवन की छत का चित्र दिखाई दे रहा है।

तो उसके आस-पास उधर दूसरी तरफ रोड पे (पर) काफी हरियली दिखाई दे रही है।

वह नीले कलर का कुर्ता पहन रखा है।

जिसमे सफ़ेद कलर का फर्श का मार्बल लगा हुआ है। दीवारों पे भी सफ़ेद कलर किया हुआ है।

दुकान के जो गेट के ऊपर भूरे कलर का कलर --

और नीचे हरे कलर का पायदान --

और दो लड्कियों ने गुलाबी कलर की ड्रेस पेहेन रखी हैं और सब ने लाल कलर की टोपी पेहेन रखी हैं।